यहां पे आप देख सकते हो ये तीनों चार औरते हैं ये नृत्य कर रही है ये हनुमान जी की तस्वीर है।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

पानी ले रहा हो और ये पता नहीं क्या कर रहा पानी में पानी फ फस --

यहां पे आप देख सकते हो ये--

ये यहां पे आप देख सकते हो।